इस ए_टी_एम के बाहर कुछ लोग भी खड़े है।

यहां पर कुछ लेडिस और जेंट्स मिलकर योगा कर रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक झरना दिखाई दे रहा है।

यह झरना पहाड़ों से बह रहा है।

और कुछ टैडी बियर भी छत पे लतक रहे है।

यह लड़की शायद एक डान्स परफॉर्मेंस कर रही है।

इन कुर्सियों में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

और कुछ लोग खड़े हुए भी हैं।

यह गेट ब्लैक कलर का है।

उस बोर्द में विवेकानंद चैरितेबल पॉलीक्लिनिक लिखा हुआ है।

और इस स्टेज के नीचे एक झरना भी लगा हुआ है।

यह शायद एक ऑडिटोरियम हॉल है।

और इस पिक्चर में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

इस बिल्डिंग में कुछ लकड़ियों से बंधा हुआ सामान भी पड़ा हुआ है।

इस बोट का कलर वाइट कलर है और इस गेट के नीचे रेड कलर का गेट बना हुआ --

इस रोट का डामरी करण नहीं किया गया है।

इस रोड के साइड में कुछ लकड़ी के पल्ले भी लगे हुए हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक किचन दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का नाम दुल्हनिया है।

इस दुकान के बाहर एक बहोत बड़ी एल_इ_डी स्क्रीन भी लगी हुई हैं।

और इस दुकान के बाहर कुछ कार भी खरी हुई है।

यह लड़का जिम में खड़ा है और यह लड़का अपनी बॉडी दिखाते हुए फोटो क्लिक करवा रहा है।

फिर झूले का पिलर रेड कलर का है और इस झूले में ग्रीन और ब्लू कलर की डंडे भी लगे हुए हैं।

इस गाड़ी के आगे एक शॉप है उस शॉप का नाम जालाराम शॉप है।

और इस पहाड़ के चारों तरफ में छोटे छोटे घर भी हैं।

इस हॉल में सीढ़ी और लिफ्ट भी लगी हुई है।